यहाँ पर दो नाव हैं।

और मूर्ति के हाथ में तीर है।

एक्के के इधर-उधर बहोत सारे टिन लगे हैं।

एक जा रहें --

ए और एक गो में पास खड़े है।